अंदर की तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एस_पी_आई का बैनर है।

लोगों का भीर है।

यहां पे कुछ बाइक और साइकल भी हैं।

ये एक फोटो है किसी जिम का--

और जिसमें चल चट रहा है।

ये एक फोटो है पार्क का और--

एक आदमी है जो कि ले टा हुआ है।

पीछे की तरफ कुछ मसीन है।

आसमान का रंग नीला है।

दीवाल में तिरंगा झंडा है।

दीवालों पर हरा पेंट है और--

और कुछ डेकोरेशन किया हुआ है दीवालों पर--

ये एक फोटो है किसी पार्क का और--

जमीन में कुछ लाइट्स लगा हुआ है और पीछे की तरफ दो काले टंकी हैं।

फोटो शाम के समय का है और पीछे में बहुत सारे घर हैं।

ये एक फोटो है रोड साइड का और--

ये एक फोटो है किसी टायर दुकान का और--

ये एक फोटो है रोड साइड का और--

ये एक फोटो है किसी हॉल का और--

एक रिक्शा है और पीछे की तरफ कुछ घर है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

किसी मार्केट का और--

और सामने की दीवार पर एक शीशा है।

ये एक फोटो है किसी कमरे का और--

जमीन पर हरा कारपेट है।

ये एक फोटो है किसी पार्क का और--

बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं यहां पर--

ये एक फोटो है मार्केट का और--

पीछे के तरफ कुछ पेड़ हैं।

पीछे के तरफ भी बहुत बड़े पैर हैं।

जमीन में कुछ पत्थर के ढेले हैं।

वाइट रंग के कुछ कार्स हैं।

कुछ बुक्स और कॉपियां भी हैं।

ये एक फोटो है किसी थिएटर का और--

ये तस्वीर दिन के समय का है और--

यह एक फोटो किसी दुकान के बाहर का है और--

यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो योगा कर रहे हैं।

उसके ऊपर कुछ टॉवल रखे हुए हैं और--

ये एक रोड साइड का फोटो है और--

यहां पे बहुत सारे ऑटो हैं।

यहां पे खाने का एक प्लेट लगा है।

जो कि ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना है।

जहां पे बहुत सारे लोगों का भीड़ है।

कॉलेज के ऊपर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

पीछे के तरफ एक ईटे का घर है।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

ये एक फोटो है किसी रोड साइड का और--

रोड पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दीवालों पर पोस्टर और--

पार्किंग एरिया का और--

कुछ ब्लैक कलर और कुछ वाइट्स में--

ये एक फोटो है जो कि--

ये एक फोटो है किसी रोड साइड का और--

और बीच में खंबा है डस्टबिन है।

भूरे रंग का शटर है।

ये एक फोटो है जो कि किसी मैरेज हॉल के बाहर का है और--

जमीन में लाल कारपेट पिछे हुए हैं।

सीट किया है और दो बड़े कलश रखे हैं।

इसमें दो जानवर हैं जो कि पानी के अंदर है और--

कुछ पेड़ हैं और मिट्टी भी है।

ये एक फोटो है किसी पार्क के तरफ का और--

और पीछे की तरफ कुछ दुकानें जैसा है।

और टेबल है रेड कलर में--

बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं।

ये एक फोटो है किसी होटल का और--

बहुत ही सुंदर लाइट्स लगे यहां पे।

ये एक फोटो है किसी फैक्ट्री का और--

यहां पर बहुत सारे वर्कर्स हैं।

और बहुत सारा बोरा भी रखा हुआ है।

छत पर भी कुछ पटरे बिछाए हुए हैं।

और कुछ छोटे गमले में फूल का पेड़ है।

जो कि अलग-अलग रंगों में खिला हुआ है।

यहां पर एक कार है और एक बाइक लगा है।

और कुछ बैनर्स भी लगे हुए हैं।

जो कि छत से लिया गया है।

और एक पानी का टंकी है।

डोड़ों के बीच में पौधे लगाए हैं।